बाउंड्री वॉल के किनारे एक आदमी जा रहा है सामने रोड है.

एक लड़का साइकिल में बैठा हुआ है.

यह हरमो रोड में स्थित है.

छह आदमी बैठे हुए हैं.

एक चाय की बड़ी केतली है.

गेंदे के फूल नजर आ रहे हैं.

आठ खिड़किया नजर आ रही हे.

एक टेबल नजर आ रहा है.

नीचे बिल्डिंग बनी हुई है.

निचे कारपेट बिछे हुए नजर आ रहे हे.

एक टेबल नजर आ रहा है.

स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

यह कोई गाडी का ऐसेशरीज़ शोरूम है।

ऊपर मे लाइटे जल रही--

लेफ्ट में कुछ फ्लैगस टंगे हुए नजर आ रहे हैं.

सामने में दीवाल में दिल का चित्र नजर आ रहा है.

एयर कंडीशनर दिखाई आ रहा है.